घर दिखत हे वहाँ टूटा-फूटा ढ़लाई यहाँ इंटा दिखत हे वहाँ दीवाल विवार दिखत पोल बोल दिखत फिर वहाँ आउटसाइड में और बिल्डिंग बनत हे।